ऊपर आसमान है जंगल में एक मनुष्य--

इसमें दो मनुष्य दिख रहे है एक मनुष्य नीचे है जो रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है।

ब्लू कलर का पैंट है नीचे ब्लू कलर का डब्बा है।

इसमें से एक मनुष्य ब्ल्यू कलर का टीशर्ट पहना हुआ है।

इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे मनुष्य है उसमें कुछ पुरुस है।

वो एक ठो बहुत बड़ा घर है जिसमें जिसमें बास लगा हुआ है।

ये घर बहुत बड़ा है।

कार्ड से डिजाइन किया हुआ है।

इसमें बहोत बड़ा बिल्डिंग का दृश्य दिखाया गया है जो कि ब्लू कलर में है।

दिवाले है वाइट कलर की पर्दे हैं।

इसमें सनसिल्क का शैंपू है क्लिनिक प्लस का शैंपू है डव का शैंपू है।

इसमें बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।